इसके अगल बगल में बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग है।

यहां पे ब्रेंच लगा हुआ है जोकि ब्रेंच के ऊपर बैग रखा हुआ है।

इस बाउंड्री के बाहर एक छोटा सा बच्चा भी है।

जो की यहां पे हर एक व्यक्ति घूमने आ सकते है।

और घूम रहे हैं यहां पे लाइट भी लगाया गया है।

जो कि ऑरेंज कलर में है।

इकिल का दुकान है जो कि बच्चों की साइकिल रखे हुए हैं छोटे छोटे।

बहोत सारे गाड़ी खड़ी है कार खड़ी है बाइक खड़ी--

और यहां पे फूल भी है।

और यहां पे बच्चे भी हैं बड़े व्यक्ति भी हैं और महिला भी है।

जो कि दिखने में काफी सुंदर और अच्छे भी है।

यहां पे विंडोज़ भी है यानी की खिड़की।

और यहां इसका डिजाइनिंग भी काफी अच्छा--

यहां पर बहोत सारा चेयर और टेबल लगे हुए--

और यहां पे मार्बल की काम किए हैं।

और यहां पे कुछ व्यक्ति लोग भी हैं।

य एक छोटा मोटा सा दुकान है।

फेस वाश रखे हैं और उजाला भी रखे हुए हैं।

कि यहां पर काफी सुंदर और अच्छे साइकिल रखे हुए हैं ।